तो अ सफाई कर रहा है इसके अलावा मशरूबात रखे गए हैं।

ये एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग के बहार की तस्वीर है जिस बिल्डिंग के अंदर ए_सी लगे हुए है और बहार उनके बताया जा रहा है कि ए_सी लगे हुआ है बहार उनका नाम लिखा हुआ हैं ।

बिल्डिंगें का इसके आलावा सीढिया लगी हुई है लोगों के चढने के लिए दर्क्त नज दिखाई दे रहे है उसका छा --

इसकी छाव पड़ रही है इसके अलावा दो लोग दिखाई दे रहे है तस्वीर में एक जा रहा है और एक आ रहा है इसके अलावा जमीन है और धूप निकली हुई है ।

एक दुकान के बाहर की तस्वीर है जिसके बाहर सेव मोर का लिखा हुआ है और ।

लोगों के छाँव के लिए उन्होंने ऊपर एक छत सी डाली हुई है और करीब कुछ लोग हैं।

एक कार सर्विस की दुकान है जिसके बाहर बहुत से लोग खड़े हैं वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं सारे।

भरने वाला वो खड़ा है रात का वक्त है लाइट्स जल रही है सामने कुछ गाड़ियां है।

कुछ तारे दिखाई दे रही है तस्वीर में इसके अलावा बहुत से तर्क्त ऊचे ऊचे तर्क्त लगे है दाए जाने भी बाए जाने भी और--

उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाया गया इन सारी चीजों के साथ जमीन पर--

यह रात का वक्त है और घर के बाहर की जगह है यहां पर लाइट्स चल रही है इसके अलावा ।

अभी चीज़े सारा सामान रखा गया है।

खड़ा हुआ मिल रहा है नजर आ रहा है इसके अलावा बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर पानी है उसके पास--